इधर पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट फिटनेस पॉइंट लिखा हुआ जो की लाल कलर से लिखा हुआ है।

कुछ दीवाल भी नजर आ रही है सामने की ओर और दीवाल के बाजू में भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और उसमें कुछ लिखा हुआ है फीमेल जनरल बोर्ड और यह लिखा हुआ सफेद अक्षरों से।

बैडमिंटन क्रिकेट और कुछ भाग दौड़ और स्केटिंग की भी तस्वीर नजर आ रही--

एक कुर्सी भी रखी हुई है कुर्सी के बाजू में एक टंकी भी रखी हुई है और कुछ हेलमेट्स भी टंगे हुए है बाजू मे--

इधर पर आप देख सकते हैं बहोत सारे बच्चे योगा क्लासेस करते हुए नजर आ रहा है।

पीछे की ओर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लाल अक्षरों में लिखा है पेट्रोल पंप चालू है।